डेस्क रखा हुआ है जहां पे--

ये यातायात सोसाइटी का बोर्ड लगा हुआ है।

एक ऑटो जो है क्रॉस कर रहा है और एक बाइक है।

एक व्यायाम को शो कर रहे हैं।

उन लोगा कुछ फंक्शन चल रहा है।

गमले में एक पौधा है जो दिखने में बहोत अच्छा लग रहा है।

ये चाहे एक आइसक्रीम शॉप है।

व्हाइट और ब्लू का पैंट कॉम्बिनेशन हैं।

किसी चीज को देखने के लिए--

और बाकी जो लोग हैं वो मैच का मजा ले रहे हैं।

जो कि एक डैम है वहां पे फोटोशूट करा रहे हैं।

जो दिखने में बहोत अच्छा लग रहा--

ये यह एक चर्च है जहां पर बहुत सारे लोग एकत्र हुए हैं।

एक फंक्शन सेलिब्रेट करने के लिए--